उसके आगे एक वाईट कलर का फोर व्हीलर जा रहा है।

यह एक होटल है।

यह दुकान बाथरूम संबंधित सामान बेचती है।

एक मेन गेट हैं।

यहां पे बहुत सारे आदमी दौड़ रहे हैं जो की वाइट कलर का जूता पहने हैं।

बहुत सारे तरह तरह के जिम करने के समान भी हैं।

हेलमेट भी बहुत सारे है।